लेकिन इसके आस पास हम देखिए बहुत भीड़ है लोग अ जो है रंग बिरंगे पोशाकों में दिख रहे हैं। आमतौर पे इस तरह की झांकी पंद्रह अगस्त या छबीस जनवरी में निकाली जाती है।

यानि की यह एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट यानि की हवाई जहाज से जो लोग यात्रा करते हैं वो लोग इस एयरपोर्ट से जा सकते हैं। स्थानी लोगो के लिए नजदीक पड़ता है।

ये स्थानीय शहरों में दिखाई देती हैं और ऐसा लग रहा है ये ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहक है जिन्होंने अभी-अभी ई रिक्शा खरीदी है।

यहाँ तस्वीर में हम देख सकते हैं तीन महिलाओं के बीच में एक नीले रंग के कुरता पहने एक पुरुष खड़े हैं और इनको देख कर लग रहा ह तैयार हो कर खड़े हैं मानो किसी शादी जैसे अवसर पर बुलाये गए हो वहाँ आमंत्रित हो।

तो समानतः ये मंडी के मंडी का ही दृश्य लग रहा है।

यहाँ आप देख सकते है जमीन पर मैट बिछाके कुछ लोग एक जैसे पोस्चर में नजर आ रहै हैं ये पोस्चर योगा से मैच करता है यानी कि ये --

योगा कर रहे हैं और सामने शीशा भी लगा है जिसमें छवि दिखाई दे रही है यानी कि यह वह स्थान है वह क्लासरूम है जहां योगा कराया जाता है | योगा हमारी सेहत के लिए बोहोत अच्--

यहाँ हम देख सकते है बहुत सारे टी और कॉफी मग लगे हुए है जो बोन चाइना या चीनी मिट्टी के होते है |

और ये कॉर्नर लग रहा है जो अक्सर मॉल मे होता है मॉल मे प्राकर्तिक कॉर्नर अलग होता है।